सामने की तरफ बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं जहाँ पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

टेबल के ऊपर किताबें रखी हुई है।

आदमी जा रहा है जिसने शर्ट और पैंट पहनी हुई है।

वहां पर बहुत सारे कुर्तियां --

टेबल के पास काले कलर की कुर्सी है।

और एक औरत बैठी हुआ है उसके हाथ में एक थैला है।

बहुत सारी साइकिलें रखी हुई है।

का गार्डन नजर आ रहा है जिसके --

दुकान दिखाई दे रही है जिसमे से एक दुकान का नाम वैशाली इलेक्ट्रॉनिक --

पास में ही एक गाडी खड़ी है जिसका रंग सफ़ेद है।

खंबा है जिसके ऊपर भगवान् पूरा लिखा हुआ है।

वो रास्ते को नीले और सफ़ेद कलर के परदों से --

दुकान का गेट सफ़ेद कलर का है।

कि एक सुंड हैं उसके सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे है हां --